और यह बहुत ज्यादा छोटी लग रही--

दिख रही है जिम में बहोत--

सारे लोग नजर आ रहे--

इस इमेज में मुझे एक बहोत--

बहोत बड़ा प्लेग्राउंड दिख रहा--

इमेज में मुझे एक बहोत ज़्यादा बड़ी कपड़े --

ज्यादा छोटी सी लग रही है।